यह एक विशालकय नदी है जिसकी सुंदरता बहुत सुन्दर ही दिखाई दे रही हैं।

कई लोग आसपास दिखाई भी दे रहे हैं और पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहुत ही सुन्दर सोफा सेट रखा गया है जो राजा -महाराजा के कालों में रखा जाता था उसकी सुंदरता बहुत सुन्दर प्रतीत हो रही हैं।

यहाँ शादी विवाह पार्टी में भी बुकिंग के लिए सम्पर्क किया जाता हे यहाँ भोजन एवं सभी प्रकार के मिठाई उपलब्ध--

यह एक बहुत ही सुंदर पार्क दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत ही सुंदर-सुंदर पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं और आसपास कई लोग बैठे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक बड़ा सा आकाश झूला दिखाई दे रहा है उसमे काफी लोग बैठे हुए भी दिखाई दे रहे है और बहुत सी लाइटे भी उजाला दे रही हे और बहुत से लोग भी दिखाई--

बहोत ही सुन्दर- सुन्दर लाइटेड रूम कैमरे भी दिखाई दे रहे है और पंखे भी --